हरा भरा सुन्दर दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य मे आप एक खेत को देख पा रहे है तथा यह साम का समय है तो सूरज भी डूब रहा है ये बहुत ही हरा भरा है बहुत ही सुंदर है।

बहुत सारी धान सी भी लगी हुई है सूरज ढल रहा है और हरे हरे पैड पौधे जो है सुनहरे दिखाई दे रहे है।